इस इमेज में यहां पर एक पूल दिखाई दे रहा है और सड़क पर देखिएगा दो कार खड़ी हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक रेलवे ट्रैक दिखाई दे रहा है रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है और बोर्ड पर दुर्गापुरा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने टॉय की दुकान दिखाई दे रही है और बोर्ड पर देखिएगा आओ बच्चों टॉय लिखा हुआ नज़र आ रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पे एक फैक्ट्री दिखाई दे रही है और जहां पे ये दो मजदूर काम करते हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे फ्रूट की दुकान दिखाई दे रही है जहां पर अंगूर सेब संतरे केले नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखियेगा सामने यहां पर एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर लिखा है जैन हॉस्पिटल --

इस इमेज में देखिएगा यहां पर स्कूल की छात्राएं खड़ी हुई हैं उनके हाथ में देखिएगा कुछ प्रोजेक्ट बना हुआ दिखाई दे रहा है।

इस इमेज मे देखियेगा यहाँ पे एक सड़क दिखाई दे रही है जहां पर कई सारे कार और ऑटो रिक्शा चलती नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पर एक बड़ा सा पार्क दिखाई दे रहा है और बीच में एक फाउंटेन और कुछ लोग भी यहां पर नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में तकिए का यहां पे कोई दुकानें दिखाई दे रही है जहां पे देखिएगा कुछ आदमी खड़े हुए है और ऊपर लाइटे भी जलती नजर आ रही है।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे एक हॉस्पिटल दिखाई दे रहा है इस पर बोर्ड पर आदित्य हॉस्पिटल लिखा हुआ नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने यहां पे एक शोरूम दिखाई दे रहा है और ऊपर देखिएगा नेक्सा लिखा हुआ है और कई सारी कारें यहां पर अंदर दिखाई दे रही हैं।

इस इमेज देखियेगा सामने यहां पर बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है और यहां पर गैलरी में दरवाजे भी नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा यहां पे सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है नीचे छोटा सा महल भी बना हुआ है और पानी का तालाब भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा सामने बड़ा सा तालाब दिखाई दे रहा है और किनारे पर को जो बहोत सारी औरतें बैठी होकर पूजा करती हुई नजर आ रही हैं।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पे एक सामुदायिक केंद्र दिखाई दे रहा है और यहां पर देखियेगा कुछ लोग और पेड़ भी नज़र आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा सामने स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ लड़के लोग नहाते हुए नजर आ रहे है।

इसे इमेज देखिएगा सामने एक स्कूल दिखाई दे रही है जहां पर सामने दिखेगा कहीं सारे टीचर खड़ी हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक जे_सी_बी मशीन दिखाई दे रही है जो गढ्ढा खोल खोदने का काम करती हुई नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर एक चिड़िया घर दिखाई दे रहा है और पानी मे देखियेगा कई सारे बतख तैरते हुए नज़र आ रहे है।

इस इमेज में देखिएगा हमको यहां पर सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है और यहां पर पेड़ और खेत भी नजर आ रहा है।

इस इमेज में देखिएगा हमको यहां पर एक हॉल दिखाई दे रहा है और दीवार पर देखिएगा सुंदर सी डिजाइन नजर आ रही है।

इस इमेज मे देखियेगा यहां पर यहां पे एक मस्जिद दिखाई दे रही है और काफी सारे यहां पर मुस्लमान भाई बहने नज़र आ रहे है।

इस इमेज मे देखियेगा हमे एक सामने व्हाइट कलर की मूर्ति दिखाई दे रही है और पीछे सुंदर सा बंगला भी नज़र आ रहा है।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

इस इमेज में देखियेगा हमें यहां पे बड़ा सा ग्राउंड दिखाई दे रहा है और वहां पर देखियेगा कुछ लोग खड़े हुए नजर आ रहे हैं।

इस इमेज में देखिएगा हमें ही सामने बड़ा सा हॉल दिखाई दे रहा है और देखिएगा कुछ खिड़कियां यहां पर सामने नजर आ रही हैं।